यहाँ स्कूल हैं ऐशन कुल ऐशन पुल अजी पुल हैं और बाहर में गाड़ी खड़ा हुआ हैं टोपी पहना हुआ स्टूडेंट --

और मछली भी अंदर में हैं रु पत्थर-वत्थर हैं और आदमी साइड-साइड मछली मार रहा हैं।

और पेड़-पौधे हैं बाहर में और स्कूल का है चप्पल-वप्पल नहीं है लाइट --

बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इस मे हिंदी मे लिखा हुआ हैकलर दिया हुआ है डॉट्स है।

यहां पर कुछ एक्सरसाइज करने का हैं सामान दिया हुआ है एक्सरसाइज करने के लिये यहाँ बॉडी बनाते हैं लाइट हैं।

यहाँ पर टायर है सी.आर.टी. का बहुत काला में है और बाइक भी खड़ा हैं साइड में --

पत्थर हैं जंगल हैं फू झाड़ी पे ये लोग आदमी लोग हैं ये लोग क्या कर रहा हैं पता नही हमलोग को तो--

घर है साइड -साइड में देखने में सुंदर लग रहा हैं वाह!